बहोत सारे व्यक्ति अपने बस स्टैंड की ओर जाते है अपना-अपना कार्य करते है और बहोत से कार्य इस जगह में किया जाता है और अपना-अपना कार्य करके ये लोग अपने-अपने घर चले जाते है।

विश्वास करने वाले लोग यहां पर पूजा पष्ठ करने के लिए घूमने के लिए देखने के लिए नाच ने के लिए और देखने के लिए जाते है।

यां एक स्पॉट घर है। इस जगह में एक मंदिर मस्जिद है। यहाँ पर भगवान का पूजा करते है। जो गॉड होता है उसका पूजा किया जाता है। और जहाँ तक का मुझे मालूम है हर एक--

यह एक पार्किंग एरिया है यहाँ पर गाड़ी को पार्क किया गया है ऐसे ही कार मेरे को लेने का मन हैं मै चाहता हू काश मै भी ऐसे ही कार ले--

काम के लिए बैठते हैं साइन करते हैं हमारे दस्तावेज में और हमारे द्वारा किया गया हर एक प्रकार का कार्य यहाँ पर किया जाता--